वहां पे घास फूस दिख रहा है किसी चीज का पेड़ है वहां पे और बकरियों को बास्केट में रखे गए--

जो काफी सुंदर दिख रही है काफी अच्छे अच्छे सी चीजें भी है यहां पे--